बैठे हैं ये पढ़ रहे है।

देख सकते हो यहां पर के पीछे बहुत सारे घर बने हुए हुई हैं और पारक में हरियाली ही हरियाली दिख रही है।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

और यहां पे ये बाल्टी रखी हुई है।

और ये यहां पे बाल काट रहा है ये नाई है और यहां पे आप देख सकते हो लाइट ही लाइट दिख रही हैं बड़ी बड़ी लाइट दिख रही हैं।

और यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे कुर्सियां ही कुर्सिया रखी गई है। यहां की लाइट का भी--

यहां पे कुंबेर मा मार्बल लिखा हुआ है मार्बल --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

यहां पे बहुत सारी यहां पे ऐ_सी लगी हुई है और यहां पे बहुत सारे आदमी है।

आदमी है और ये यहा पे--

और यहां पे चारों तरफ हरियाली हरियाली पेड़ पौधे दिख रहे है।

और यहां पे ये सड़क दिख रही है और ऊपर आप देख सकते हो--

ये हरी हरी घास लगी हुई है और यहां पे--

पैरों से योगा की जाती है।

ये दो बेड्स हैं और यहां इनके बीच में एक औरत है और यहां पे बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं और यहां पे कार भी लगा हुआ है।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

यहां पे आप देख सकते हो ये बहोत अच्छी सजावट कर रखी है यहां पे चारों तरफ--